यहां पर हमें स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है।

सफेद रंग का घर है नीले रंग का घर है ठीक है।

एक सफेद और नीले रंग की थैली दिखाई दे रही है सामने की तरफ--